एक आदमी बैठा हुआ है पीछे एक ए.टी.एम. है | अलाहाबाद ए.टी.एम. लिखा हुआ है उसमें बैंक अलाहाबाद बैंक | यहाँ एक आदमी साइकिल से उतरा है समान निकाल रहा है।

पीछे पेड़ पौधे हैं। बहोत बरा -बरा घाँस -खुस है। आसमान है पक्क्षी है।

लाइट वाइट है। एक साइड से पटाखा छूट रहा है। ऊपर से नीचे की ओर प्रका छूट रहा है। डीजे विजे फिट किया हुआ है। बहोत सारे लोग यहां पे खड़े हैं।

सामने एक मंदिर है इधर से --

खिड़की है। बहुत सारा यह पाइप हैं। साइड मे पानी गिरने के लिए।